और यह सामने एक दरवाजा दिखाई दे रहा है जिसमे से रोशनी अंदर आती हुई देखि जा सकती है अगल-बगल मे कुछ हरे-हरे पेड़ लगे --